और यह कुछ नाम लिखा है बोर्ड में ढंग से दिख नहीं पा रहा है और ये बहोत सुंदर लग रहा है अच्छा लग रहा है प्लेस --

यहां जो पंखे लगे हुए इसके डिजाइन जैसे घूम रही है मुझे बहोत अच्छी लगी है।

जो कि शायद शादी हो चुकी है ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि--

और ये सब तेलुगू की शादी की थी इन्होंने व्हाइट पेहना है तो मुझे लगा रहा है तेलुगू की शादी है ये --

येलो और ब्लैक बैलून से ओ मुझे बोहोत अच्छी लग रही है इसमें।

दो नहीं तीन व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहे और एक उधर शायद लेडी है मुझे ऐसा लग रहा देखने से तो--

प्लेस है कोई पेट्रोल पंप है ये यहां पे गाड़ी वगैरह खड़ी होती है यहां पे लोग--

समाज वाले निकालते इसे हैं ना उनकी जो मन अ मतलब मनताये होती है वो रथ को खींची जाती है।

और यहाँ पे लाइटिंग वगैरह जो है न बहोत अच्छी लग रही है यार मुझे इसके पर्दे की डिजाइन वाव मुझे बहोत अच्छी लगी इसके टाइल्स की डिजाइन ये भी मुझे बहोत अच्छी लगी यार --

और पूरे जींस मुझे पूरे मतलब अह आदमी ही नजर आ रहे हैं एक भी मुझे इसमें औरत नजर नहीं आ रही इनके पहने हुए कपड़े मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं कि कलर जो फुल कपड़े हैं।

यहां पे लोग काम करते हैं ना क्योंकि यहां पे फाइल्स वगैरह रखी हुई है।

यहां पे मुझे पंखे वगैरा भी दिखाई दे रहे है सैटर वगैरा जो बोलते है न जो बंद चालू करते है वो भी अच्छे से दिखाई दे हैं न।

यहां पे मुझे ये जिम का फोटो दिखाया जा रहा है ना यहां पे मुझे ए_सी भी दिखाई दे रही यार बहोत बड़ी अच्छी लग रही है मुझे--

बहुत सारी और यहां पे मतलब ये कोई कार्यालय भी लग रही है।

स्कूटी वगैरा भी मुझे दिखाई दे रही कारस भी दिखाई दे रहे है।

अ हम इसको देखके बोल सकते हैं कि यह हमारे शांति का प्रतीक है और इसके जो सजावट है मूर्ति के--

जैसे जो ऊपर जो सर के ऊपर डिजाइन की गई है वाओ आई लाइक दिस रियली ।